यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है यह बिल्डिंग सर्किट द्वारा सजी हुई है।

ये भवन फ़ंक्शनों के लिए दिया जाता है और ये बहोत ही बड़ा और सुंदर भवन है।

यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनी हुई है जिसके चारों तरफ फुग्गे लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी की तस्वीर लगी हुई है कुछ ही दूरी पर यहाँ पर --

यहाँ पर एक टाटा मोटर्स की बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पर इसके अंदर की ओर बोहोत से वाहन रखे हुए हैं।